और सामने की तरफ एक कार दिख दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे जो माइक्रोमैक्स है सैमसंग का हैं।

एक पीला रंग की बस खड़ी हैं ।

उस पर लिखा है पंजाब नेशनल बैंक --

जोकि इसका दरवाजा खिड़कियाँ बंद हैं ।

इस चित्र में दो लोग दिखाई दे रहे हैं ।